यहाँ पर बच्चे उनके पिता भी आये हुए हैं एक आद बच्चे होंगे मुझे लग रहा है बाइकें भी खड़ी हुई है।

जिन पीने के लिए पानी और बाहर साइडों से पक्की बाउंड्री बनी हुई है इसके सीढियां बनी हुई है पेड़ वृक्ष वगेरा भी खड़े हुए हैं।